आप अगर यहाँ देखते है इस इमेज में अगर हम देखते है तो एक छोटी सी पोन्स में पानी इकठ्ठा किया है। जहा पे काफी सारी घेरा बंधी लोहे से की गई है। काफी पत्थरों से --

अ इस इमेज की बात करे तो इस इमेज में भी हमें काफी सारी एंटिक पीसे देखने को मिल रही है अ जोकि हर एक अलग-अलग --

छोटे छोटे पोल्स पे टूल्स टाइप रखी हुई हैं और इन्हें हमे एक म्यूजियम के तरह देख सकते हैं जोकि देखने में काफी अच्छी लग रहीं --

शोपिंग कोम्प्लेक्स है। जैसे कि हम क्लोथ्स की शॉप है। नीचे की तरफ दो मोटरबाइक्स खड़ी हुई हैं और नीचे भी काफी सारे लोग हैं और ऊपर भी काफी सारे लोग घूम रहे हैं इधर --

और अगर हम यहाँ की बात करे तो यहाँ पे हमे दो तीन सड़के दिख रही है सडको के पास में ही एक कॉलेज है जोकि वाइट कलर से बना हुआ है।

हम अगर इसमें इमेज की बात करे तो यहाँ पे राजकीय बोध्य संग्रहालय गोरखपुर के नाम से एक गेट बना हुआ है।

हम्म इस इमेज मे देखतें हैं कि काफी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं औ--

हाँ स्वीट्स भी कॉर्नर है और बड़े-बड़े दो पेड़ भी हैं और उन्हीं पेड़ो के नीचे उन्हीं पेड़ो के छांव में एक वाइट कलर की बोलेरो खड़ी हुई है।